जो की मेन गेट लोखन का है।

यहाँ पे देखिए यहाँ पे केबिन टाइप का दिख रहा है।

मोस्ट इसी बीच में से थोड़ा सा --

दरवाजा खुला हुआ है बगल में।

बगल में ईंट रखी हुई है | मिट्टी की फर्श दिखाई दे रही है | सामने बाइक दिखाई दे रही है | बगल में पेड़ भी दिख रहे हैं ।

गार्डन में ढेर शारे प्लांट्स भी दिख रहे है। पेड़ भी दिख रहे है।

और मिटी भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक गेट दिखाई दे रहा है काफी--

बहोत ही सुन्दर दिख रहा है।

आप यहाँ पे देखिये ये परदे का शॉप है।

और बगल-बगल में पेड़ काफी बड़े-बड़े दिख रहे होंगे।

यहाँ का क्लाइमेट बहुत धुंधला दिख रहा है।

कोहरा टाइप का भी है यहाँ पे यहाँ का जो मत --

ये जिम क्लास है। यहाँ पे जिम की से ढेर सारी मशीने रखी हुई है।

और जिम क्लास एकदम सुना है यहाँ पे कोई भी नहीं है फर्श काफी यहाँ का क्लीन है।

और इन सब दुकानो को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है ऊपर बोर्ड लगा हुआ है एशियन पेंट ।

इंटरप्राइजेज बल्ब लाइट --

और यहाँ सामने घर बन रहा है जिसमे ढ़लाईया हो रही है।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

ये कपड़े का शॉप है यहाँ पे ढेर सारे कलरफुल में कपड़े हैं जो कि बहुत अच्छे से सेंटर से लगाए गए हैं ।

ये एक बैडरूम है। बैडरूम में बेड है बेड पे दो तकिये है कम्बल है।